अपने बादल कितने है सात कलर में होते हैं ना छह सात चार चार पांच कलर में दिख रहे हैं और लाइटिंग की सजावट कितनी प्यारी लगती है।

और शादी है जहां पे शादियां होती हैं लोगों की वहां पे ऐसे ही सजावट की जाती है।

ये छोटा सा पार्क है यहां पे लोग घूमने जाते हैं लाइटिंग भी दिख रही है आसमान भी दिख रहा है छोटे-छोटे पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

पर किसी घर से दिख रहा है बहुत दूर तक दिख रहा है जो कि बहुत अच्छा लगा है।

ब्राउन कलर के दिख रहे हैं ब्लैक और ब्राउन कलर में है और थोड़ा-थोड़ा वाइट भी है।

ये येलो कलर की मिट्टी अच्छी लग रही है यहां पे लोग अपना कुछ लोग बातें कर रहे हैं कुछ लोग मैच खेल रहे हैं कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं कुछ लोग निकल रहे हैं।

कुछ अ पा अ पौधे भी दिख रहे है अच्छे-अच्छे आसमान भी दिख रहा है रोड भी दिख रही है कुछ प अ पशु पक्षी भी अपना घास वास खा रहे हैं।

यह एक घर दिख रहा है जो लाइटिंग से सजा है। दिवाली का चित्र दिवाली में सब लोग सजाते हैं ना।

अ फिट किए जाते हैं देखो जा रही है यहां पे घास भी दिख रही लड़की भी दिख रही है टीन से बना हुआ ऊपर--

ये ये एक कंपनी है यहां पे देखो काम हो रहा है लोहे के सामान पड़े हुए हैं।

और नीचे छोटी-छोटी सी घास लगी हुई रेत भी है कितना अच्छा लग रहा है रेत--

हेलमेट रखा है हेलमेट भी दिख रहा है येलो और पिंक कलर से दीवाल को पट्टी करा हुआ है।

घास भी लगी है घास बहुत अच्छी लग रही है ब्ल्यू कलर का आसमान भी दिख रहा है आसमान में थोड़े से आसमान में थोड़ा सा--